चार खिड़की है दो गेट है दो मंजिल का मकान है।

आ- मोमोज़ है पिज़्ज़ा है बर्गर है। एक आदमी खा रहे हैं एक आदमी मोबाइल चला रहे हैं एक आदमी मुँह देख रहे हैं।

औ दो-तीन डिब्बा है उसमें।

जिसके मतलब की बाहर बहुत सारे लेडीज हैं जेंट्स हैं। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।